इस फोटो में मुझे खिड़की दिखाई --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

इस फोटो में मुझे एस_बी_आई बैंक दिखाई दे रहा--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

इस फोटो में मुझे बहोत दुकानें दिखाई दे रही--

इस फोटो में मुझे दरवाजा दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे एक गैरेज की दुकान दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे बहोत सारी बाइक दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे कुछ जानवर दिखाई दे रहे हैं।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

इस फोटो में मुझे एक तालाब दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे पत्थर की चट्टान दिखाई दे रहीं हैं।

इस फोटो मुझे कुर्सियां दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे कुछ बॉक्स दिखाई दे रहें हैं।